यहां मेला है जिसमें दुकानें पट्टी भी हैं।

टेबल के ऊपर पानी का बोतल नमक और टिशू पेपर रखा हुआ है।

यहां पर टेंपो लगी हुई है बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई दिख रही है।

एक ब्लैक कलर की कार लगी हुई है बहुत सारे आदमी है।

और बहुत सारे रखे हुए है टेबल भी रखा हुआ है उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखा हुआ है ऊपर में व्हाइट कलर का एसी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे फूल हैं जिसका रंग येलो ऑरेंज --

अ पेड़ पौधे भी लगे हुए है एक जाली भी लगा हुआ है।

दो आदमी काम कर रहे हैं बहुत सारे लोहे के।

और घर भी दिख रही है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक टाबर है।

यहां पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे खिड़कियां लगी हुई है।

यहां पर यहां पर बहुत सारे गुब्बारे दिख रहे हैं।